देख रही हैं जिसके आस पास--

ड्रेस पहने हुए ढोल बजा रहे हैं।

जिसके अंदर कुछ लोग दिखाई--

जिसमें लिखा है गोपाल हेल्थ क्लब एंड ग्रॉसफिट ।

गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

दिखाई दे रही है और बलून डेकोरेशन भी--

चित्र मे अनुवर किराना ए--